स्कूटी भी खड़ा है एक।

जहाँ पे एक साइड में वॉल हैं दुसरी चहा साइड में एक झील हैं।

और साइड में अलमीरा शोकेच अ डाइनिंग टेबल रखा है।

और साइड में दो लड़कियां खड़े है।

ये दुकान हैं जहाँ ऊपर में देखा हैं वैली स्ट्रांग डालमिया --

और यहां पे रेस्ट हाउस बनाया है कच्चा रास्ता है अभी भी।